यख मा जी यी सफ़ेद रंग की प्लेट च एक कटोरी भी च रखीं चमच्च भी च रख्युं यख मा जी छोला भटूरा छन रख्यां जो दिखणा मा बहोत स्वादिष्ट छिन लगण लग्यां।

भटूरा बहुत ही फुल्या छन जू नरम नरम छन यखमा जी कांच कु गिलास भी छ रख्युं यखमा जी टिशू पेपर भी छ रख्युं यखमा जी कई सारी टेबलें लगीं छन।

यख मजी दुई प्लेट छ रखीं। दुइ प्लेटों पर अलग अलग परकार की स्वादिष्ट चीज ल रखीं। एक प्लेट पर चौमिन छ रखीं। चौमिन मजी अच्छी सी गार्निश भी छ करी धणियां धुणियां की।

यु कुछ देवदार का डाला छन कुछ गराला का डाला छन यख मा जी एक लाइट भी छा लगीं जो सौर ऊर्जा लाइट छा आसमान भी छा दिखेण लग्युं।